और यहां पर बहुत सारे चेयर्स और टेबल भी रखे गए है।

मैदान के पीछे हरा घास भी है। मैदान के थोड़े दूर में एक कुत्ता भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

और वहां पर कई सारी स्लाइड है।

के बाहर के मैदान पर स्कूटी और बाइक भी है।

बाईं तरफ दो सिंटेक्स भी है।

तरफ एक स्कूटी भी है।

इंसान के चेहरे को ब्लर किया गया है।

चेयर के दाहिने तरफ सोफा का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर दो खिड़की लगाए गए हैं।

सामने एक बिल्डिंग सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।

ट्रे का रंग ब्राउन कलर का है।

मुझे इस तस्वीर में एक कमरा दिखाई पड़ रहा है।

जिसका रंग ब्लू और ग्रीन है।

और उसका ऊपर स्कूटी का आगे का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है।